यहाॅं पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। यहाॅं एक दरवाजा लगा हुआ है जोकि शटर --

ऊपर में झंडे लगे हुए हैं। साइड में एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मे एक डिब्बा जैसा दिख रहा है वो नीले कलर का है पीछे मे लाइट लागी हुई हैं।

दो ठो फोटो भी दिखाई दे रहा है लाइट लगी है साइड में टेबल लगा हुआ है । यहाँ पर आदमियों ने व्हाइट कलर का कपड़ा पहन रखा है । एक लड़का है जो पिंक कलर का शर्ट पहना है । उन्होंने व्हाइट की टो --

एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जोकि भूरे कलर का है। इन लोगों ने अपने-अपने लिए डाटपट्टी बिछाई हुई है जोकि अलग-अलग कलर की है।

यहाँ पर बोहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पीले कलर की शर्ट पहन रखी है।

सट्टर लगा हुआ है। लोहे की खिड़की भी लगी हुई है। यहां पर बस एक छत्ता लिए बैठे हुए हैं आदमी। एक व्हाइट कलर का पहना हुआ है इन्होंने। टोपी पहनी हुई --

यहाँ पर बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है। जिनमें बहुत साड़ी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है सामने में दो कार खड़ी हुई है एक बाइक --

यहाँ पर सामने में कांच के दरवाजे लगे हुए है एक दुकान दिखाई दे रहा हैअ--